ऊपर से कपड़े दिखाई दे रहा है इस पर बहुत सही बड़ी-बड़ी लाइट्स लगी हुई व्हाइट कलर की आई थिंक ये तो दिन का ब्लू ही है अच्छा लगता है।

यहाँ पे जो एक नदी है इसमें बहोत सारे पानी भी हैं। बहोत सारे पत्थर भी हैं छोटे बड़े और सामने एक चट्टान दिखाई दे रही है जो --